पंखे की एडवर्टाइजमेंट का फोटो है।

ये फोटो क्रॉकरी के सामान की फोटो है।

यहां पर व्हाइट कलर की बालटी और व्हाइट कलर का मग रखा हुआ है यहां पर शिशा भी लगा हुआ हैं।

इनका इंटीरियर डिजाइन बहोत ही सुंदर लग रहा है।

एल_ई_डी बल्ब से लेकर इलेक्ट्रिकल सामान मिल जाता है।

और यहां के अंदर का इंटीरियर --

यहां पर आपको हर तरह का कपड़ा मिल जाएगा।

और पास में एक लड़का दुकान के पास खड़ा है।